मोजिल्ला फायरफॉक्स मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में निम्न के बारे में सीखेंगे
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स क्या है
फ़ायरफ़ॉक्स क्यों160
वर्ज़न्स सिस्टम आवश्यकताएं फ़ायरफ़ॉक्स को डाउनलोड तथा इंस्टाल करना वेबसाइट पर जाना
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स या सिर्फ फ़ायरफ़ॉक्स एक फ्री और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है
यह उबंटू लिनक्स के लिए डिफाल्ट वेब ब्राउज़र है जोकि इन्टरनेट के लिए एक विंडो के रूप में मदद करता है
यह इन्टरनेट के वेब पेजस देखने की और उनके बीच जाने की अनुमति देता है
यह googleयाहू सर्च या बिंग जैसे सर्च एंजिन का उपयोग करके वेब पेजस भी खोजता है
फ़ायरफ़ॉक्समोज़िला फाउंडेशन नामक एक लाभ निरपेक्ष संगठन के स्वयंसेवक प्रोग्रामर्स द्वारा विकसित किया गया है
मोज़िला पर विस्तार में जानकारी के लिए mozillaओआरजी पर जाएँ
फ़ायरफ़ॉक्स विंडोज़ मैक ओएसएक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर कार्य करता है
उबंटू के लिए कुछ अन्य लोकप्रिय वेब ब्राउज़र्स हैं कॉन्करर गूगल क्रोम और ओपेरा
इस ट्यूटोरियल में हम उबंटू 1004 के लिए फ़ायरफ़ॉक्स वर्ज़न 70 का इस्तेमाल करेंगे
फ़ायरफ़ॉक्स गति गुप्तताऔर नवीनतम तकनीकों को साथ लाकर ब्राउज़िंग बेहतर बनाता है
इसमें कई फीचर्स हैं जैसे कि टैब विंडोज़ अंतनिर्मित वर्तनी जाँच पॉपअप ब्लॉकर एकीकृत वेब खोजफिशिंग सुरक्षा
फ़ायरफ़ॉक्स वेब ब्राउज़िंग के साथ तेज़ी से ग्राफिक्स प्रतिपादन और बेहतर पेज लोडिंग की सुविधा प्रदान करता है
यह नकली वेबसाइट्स स्पायवेयर और वायरस ट्रोजन्स और अन्य मैलवेयर से बचने के लिए कई सुरक्षा और गुप्तता ऑप्शंस प्रदान करता है
ऐड ऑन और उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए गए संस्थापन के लिए आसान हज़ारों थीम्स द्वारा हमें यह अनुकूलन प्रदान करता है
फेडोरा ubuntuरेड hatडेबियन और सुसे जैसे लिनक्स ओएस पर फ़ायरफ़ॉक्स रन करने के लिए यह सिस्टम आवश्यकताएं हैं
उबंटू 1004 पर फ़ायरफ़ॉक्स रन करने के लिए निम्न लाइब्ररीज़ या पैकेज्स की आवश्यकता होगी
GTK 210 या इससे अधिक ग्लिब 212 या इससे अधिक libstdc 43 या अधिक पैंगो 114 या अधिक xओआरजी 17 या अधिक हार्डवेयर में पेंटियम 4 या अधिक 512एमबी राम 200एमबी की हार्डड्राईव स्पेस की सलाह दी जाती है
सिस्टम आवश्यकताओं पर पूर्ण जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए फ़ायरफ़ॉक्स वेबसाइट पर जाएँ
000332 000310 स्क्रीन पर बताए गए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स डाउनलोड करके इंस्टाल करते हैं
यहाँ आप हमेशा फ़ायरफ़ॉक्स का नवीनतम वर्ज़न प्राप्त कर सकते हैं
अधिक ऑप्शंस के लिए ग्रीन एरिया के नीचे मौजूद लिंक अल्ल सिस्टम्स एंड लैंग्वेज पर क्लिक कर सकते हैं
ध्यान दें कि मोज़िला लगभग 70 भाषाओं में फ़ायरफ़ॉक्स प्रदान करता है
यहाँ हम स्थानीयकृत संस्करण जैसे हिंदी या बंगाली डाउनलोड कर सकते हैं
हम विभिन्न आइकन पर क्लिक करके इन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी चुनाव कर सकते हैं जैसे160 विंडोज मैक या लिनक्स
उबंटू लिनक्स में पहले फाइल को सेव करने के लिए एक स्थान चुनें
डिफाल्ट रूप से आपके होम फोल्डर में डाउनलोड्स डाइरेक्टरी चुनी हुई होती है
सेव फाइल ऑप्शन चुन सकते हैं और पॉपअप विंडो में दिखने वाले ओक बटन पर क्लिक करें
यह होम डाइरेक्टरी में डाउनलोड्स डाइरेक्टरी में फ़ायरफ़ॉक्स संग्रह को सेव करेगा
टर्मिनल विंडो ओपन करें और निम्न कमांड टाइप करके डाउनलोड्स डाइरेक्टरी पर जाएँ160cd Downloadsसीडी स्पेस टिल्डा स्लैश डाउनलोड्स एन्टर प्रेस करें
निम्न कमांड टाइप करके डाउनलोड की हुई फाइल के कंटेंट का प्राप्त करें160tar एक्सजेएफ firefox 701tarबीज़2 अब एन्टर प्रेस करें
यह फ़ायरफ़ॉक्स 70 को रन करने के लिए आवश्यक फाइल्स को लेना शुरू करेगा
टर्मिनल विंडो में निम्न कमांड टाइप करके फ़ायरफ़ॉक्स डिरेक्टरी पर जाएँ सीडी फायरफॉक्स
अब एन्टर प्रेस करें
यह आपको फ़ायरफ़ॉक्स डाइरेक्टरी पर ले जाएगा
फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र को शुरू करने के लिए निम्न कमांड टाइप करें और एन्टर प्रेस करें
या फिर आप निम्न कमांड से फ़ायरफ़ॉक्स शुरू कर सकते हैं जब आपकी करंट डिरेक्टरी होम डिरेक्टरी में नहीं है
tildedownloadsfirefoxफायरफॉक्स हम डिफाल्ट होमपेज को कैसे सेट करना है यह बाद में देखेंगे
अभी के लिए उदाहरण के लिए rediffकॉम वेबसाइट पर चलते हैं जिसमें ताज़ा खबर और जानकारी मिलती है
मेन्यू बार के नीचे अड्रेस बार में टाइप करें160 wwwrediffcom rediffकॉम वेबसाइट के होमपेज पर कंटेंट प्रदर्शित हुआ है
अब इस पेज से हम अन्य लिंक्स पर जा सकते हैं और उन पेज के कंटेंट को देख सकते हैं
हेडलाइन्स टैब के नीचे पहली लिंक पर क्लिक करते हैं
इस तरह से फ़ायरफ़ॉक्स की मदद से हम वेबसाइट देख सकते हैं और फिर वहाँ से विभिन्न पेजों पर जा सकते हैं
आगे ट्यूटोरियल्स में हम फ़ायरफ़ॉक्स तथा उसके विभिन्न फीचर्स के बारे में सीखेंगे
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद